ऊपर रेड कलर के कुछ मुकुट पहने हुए हैं। यहां बहुत सारे गुब्बारे पड़े हैं कुछ सफेद कलर के हैं।

कुछ लाल कलर के हैं और कुछ ग्रीन कलर के हैं यहां बीच में एक आदमी बैठा है उसके हाथ में माइक है वो कुछ बोल रहा है।

दुकान के अंदर एक सफेद कलर की बेंच लगी हुईं हैं।

ऊपर और भी खिड़कियां दरवाजे लगे हुए हैं।

अंदर की साइड लाइटे लगी हुई है टी_वी लगी हुई है।

तार पड़ा है ऊपर और भी कमरे बने हुए हैं।

छोटी छोटी झाड़ियां उगी हुई है छोटे छोटे पेड़ खड़े है पीछे और भी घर बने हुए है पानी वाली--

इस तस्वीर में बद्री इंटरप्राइजेज की एक दुकान है जहां पर अंदर की साइड बेंच लगी हुई है एक कुर्सी पड़ी है दो तीन आदमी बैठे हैं।

ऊपर लाइटे लगी हुई है दीवार के ऊपर सफेद कलर किया हुआ है यहां लाइट वाली कुछ मशीने लगी हुई है सफेद कलर --

सफेद कलर के केसरिया कलर के और हरे कलर के--

इस तस्वीर में कुछ महिलाएं हैं कुछ आदमी है वो डांस कर रहे--

बेंच लगी हुई है बेंच के ऊपर एक फोन पे वाला स्कैनर है कुछ रजिस्टर किताब वगैरह है कैलकुलेटर वाली मशीन है कंप्यूटर है।

और सामने कुछ नल लगे हुए है पंखे लगे हुए है एक--